एक नदी भी दिखाई दे री है जिसके बोहोत अन्दर पानी दिखाई दे रहा है और आसपास में बहुत सारे हरे भरे वृक्ष भी है जो कि हरे भरे व --

ब्लैक रंग के पोते पड़े हैं और ऊपर ग्रीन जाली लगी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं जोकि हरे नीले --

वृक्ष खड़े हैं और एक आदमी जा रहा है और--

और इन सोफ़ों पर तकिया लगा हुआ है और एक लकड़ी का काउंटर है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है।

कुछ मालाएं भी लटक रही है और एक डी_जे पड़ा है वो बज नहीं रहा है और उसके ऊपर पिले कलर के हुड --

केतलीय बिछी हुई है और बीच में एक कुकड़ी चल रही है जिसके पंजे सफेद है।

यह एक हॉल है यहां पर सोफे और सिराहने पड़े हुए हैं इनके आगे एक कांच का टेबल लगा हुआ --

पत्तियां दिखाई दे रहीं हैं और एक शेड बना हुआ है जिसके ऊपर एक लाल चद्दर डाली हुई हैं और आस पास में कुछ घर भीं दिखाई --

वो कैलेंडर और कुछ अं कट्टे टंगे हुए दिखाई दे रहे इसकी ब्लैक पोड़िया है और इस इनके --

और अंदर लाइट जल रही है और बाहर कुछ भी लटक रहे हैं और एक कैंपर और उसके ऊपर लोटा पड़ा दिखाई दे रहा है।

और अंदर कुछ कांच के शीशे बने हुए हैं अलमारियां बनी हुई जिनके अंदर कुछ सामान पड़ा दिखाई दे रहा है जो कि डब्बों के अंदर है।